यहाँ पर हमें एक ब्यूटी पार्लर दिखाई दे रही हैं। जिसके ऊपर रेड कलर का बैनर लगा हुआ है अंदर कुछ सामान रखा हुआ है फैन दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर आसमान है और अ नी घा कुछ पेड़ और घास दिखाई दे रही हैं खम्बा भी दिखाई दे रहा है।